इस मौखिक अभ्यास अथ्वा स्पोकन ट्युटोरियल में आप का स्वागत है जिस में पत्र लिखना सिखाया जाएगा
आप को तीन खिड़कियाँ दिखाई देंगी
यह लेटेक की तीन विशेष टाइपसेटींग चरणों के अनुरूप हैं - स्रोत फ़ाइल अथ्वा सोर्स फ़ाइल का निर्माण संचय द्वारा पी ड़ी ऐफ़ फ़ाइल का निर्माण और देखने के लिए एक पी ड़ी ऐफ़ रीड़र
मैं मॅक ओ एस एक्स में उपलब्द एक निशुल्क ऐड़िटर ई मॆक्स का प्रयोग कर रही हूँ क्योंकि यह रीड़र संचय करने पर पी ड़ी ऐफ़ फ़ाइल की आधुनिकतम पाठांथर को खोलती है
लिनक्स और विन्ड़ोज़ के पी ड़ी ऐफ़ ब्रउज़रस में भी यह क्षमता है
आइए स्रोत फ़ाइल में देखें कि प्रत्येक आदेश क्या करता है
पहला आदेश कहता है कि यह पत्र डोक्युमेंट क्लास का है
बारह इसकी फ़ॉन्ट साइज़ या हस्ताक्षर प्रणाली दरज़ा है
पत्र का पहला घटक है फ़्रोम ऍड़्रेस
यह यहाँ इन कोष्ठकों के बीच प्रतीत होता है
परिणामस्वरूप यह आउटपुट फ़ाइल के ऊपर दाहिने ओर के कोने में दिखाई देती है
लगातार दो स्लॅश टाइप करने से एक नई पंक्ति की शुरूवात होती है
अगर मैं यहाँ से इन दो स्लॅश को हटाऊँ और पी ड़ी ऐफ़ लेटेक आदेश से संचय करुँ तो आप देख सकते हैं कि यह दो पंक्तियाँ एक पंक्ति में परिवर्थीत हो गया है
पहले हमने दो स्लॅश के प्रयोग से लेटेक को पंक्ति का विभाजन करने का आदेश दिया था
अब यह रिवर्स स्लॅश नहीं है इस लिए लेटेक को पता नहीं कि पंक्ति का विभाजन करना है
मैं दो स्लॅश को वापस टाइप करती हूँ
सुरक्षीत करके संचय करती हूँ
इस बात को समझें कि हर परिवर्तन के बाद सुरक्षीत करके संचय करना आवश्यक है
आगर हम खाली पता दें तो क्या होगा
आइए देखें
मैं यहाँ निशान बनाऊँगी पंक्ति के अंत में जाऊँगी इसे हटाऊँगी सुरक्षीत करके संचय करूँगी
आप देख सकते हैं कि पता यहाँ से गायब हो गया है
ध्यान दें कि आज की तारीख अमेरिकी शैली में स्वचालित रूप से प्रतीत होता है160 महीना दिन और फ़िर साल
यह स्लॅश ड़ेट स्लॅश टुड़े dateतोड़े आदेश द्वारा प्राप्त होता है
हम स्वचालित तारीख का निर्माण एक खाली सूची के प्रयोग से रोक सकते हैं
सुरक्षीत करके संचय करेंगे और तारीख गायब हो जाती है
अगर हम हमारा अपना तारीख वहाँ ड़ालना चाहते हैं जैसे कि नौ जुलाई दो हज़ार साथ
सुरक्षीत करके संचय करेंगें और वह तारीख यहाँ प्रतीत हो जाती है
इस ट्यूटोरियल को पहली बार इस तारीख पर बनाया गया था
संचय करने पर हम देखते हैं कि आउटपुट फ़ाइल में यह भारतीय प्रारूप में प्रदर्शित हो रहा है
आइए पता वापस ड़ाल दें
और पुनः संचय करने पर डोक्युमेंट मूल स्थिति में वापस आ गया है
हस्ताक्षर आदेश का तर्क पत्र के नीचे प्रतीत होता है
हम डोक्युमेंट से शुरू करते हैं और फ़िर पत्र से
बेजने वाला पता पहले आता है
यह आउटपुट में बाएँ हाथ के कोने में प्रतीत होता है
मैं यह पत्र श्री एन के सिन्हा को संबोधित कर रही हूँ
स्लेश ओपनिंग ओपनिंग आदेश से प्राप्तकर्ता का पता संबोधित होता है
आप के ध्यान में यह बात पहले से ही आई होगी कि हम सभी लेटेक आदेश एक रिवर्स स्लेश के साथ शुरू करते हैं
पत्र का मूल पाठ अब आता है
लेटेक में एक नया अनुच्छेद एक रिक्त पंक्ति से शुरू होता है जैसे कि अब आप देख रहें हैं
मैं यहाँ आती हूँ
वी आर से शुरू होने वाला वाक्य यहाँ पर है
चलो ईसे अगली पंक्ति में ले जाते हैं
मैंने यहाँ एक खाली पंक्ति छोड़ दिया है
मैं इसे सुरश्क्षित करती हूँ और संचय करती हूँ
हम देख सकतें हैं कि यह नए अनुच्छेद में चला गया है
नए अनुच्छेद के साथ पत्र में अब दो पन्ने हैं
देखते हैं अगर हम फ़ॉन्ट साइज़ को कम कर दें दस तक तो क्या हम पत्र को वापस एक पन्ने में ला पाएंगे या नहीं
मैं अब यह करूँगी
सुरक्षीत करके संचय करूँगी
और आप देख सकते हैं कि पूरा पत्र एक पन्ने पर आ गया है
पुनः फ़ॉन्ट साइज़ बारह में रख देंगे और इस अनुच्छेद को भी हटा देंगे
सुरक्षीत करके संचय करेंगे
अब ठीक है
अब मैं आइटमैज़ पर्यावरण को समझाना चाहती हूँ जो कि बिगिन और ऐंड आइटमैज़ के जुड़वा आदेशों से निर्माण होता है
पाठ का हर टुकड़ा जो स्लेश आइटम से शुरू होता है बुलेट के रूप में प्रतीत होता है
यहाँ बुलेट की जगह में नंबर मिल सकती है
उसके लिए हमे सिर्फ आइटमैज़ को एन्यूमरेट से बदलना होगा
मैं इसे बदल देती हूँ और सुरक्षीत करती हूँ
बेशक अक्सर सुरक्षीत करना एक अच्छी आदत है
मैं फिर से संचय करती हूँ
और आप देख सकते हैं कि बुलेट की जगह में नंबर है
समापन में मैंने योर्ज़ सिंसीयरली शामिल किया है जो यहाँ आता है
हम पहले ही हस्ताक्षर के बारे में बात कर चुकें हैं
अंत में सीसी आदेश की मदद से अन्य प्राप्तकर्ताओं को यह पत्र पहूँचाया जाएगा
मैं पत्र का अंत एंड़ लेटर आदेश से करूँगी और ड़ॉक्यूमेंट इस आदेश के साथ पूरा हो गया है
बेझिझक आदेशों को संशोधित करें और उनका अभ्यास करें
जब तक आप आश्वस्त हो न जाएं एक समय में केवल एक ही परिवर्तन करें और तत्काल संचय करें
हर बार सुनिश्चित कर लें कि आपने जो भी किया है वह सही है
हालांकि मैंने इस ट्युटोरियल में मैक में पत्र लेखन सिखाई है यही स्रोत फ़ाइल हर लेटेक औपरेटिंग सिस्टमस में काम करेगी लिनक्स और विन्ड़ोज़ सहित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
इसमें शामिल होने के लिए धन्यवाद
कृपया अपनी राय कन्नन ऐट आईआईटी बी डॉट एसी डॉट इन kannaniitbacin पर भेजें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
धन्यवाद